ये एक बड़ी सी बगिया है इसमें हिरण वगैरे बोहोत सारे और बीच में गोल गोल से चक्के रखे हैं उनमें चार वगैरा पड़ा हुआ है।

इसके ऊपर छोटी छोटी सी घास उ खड़ी हुई है जो हरे कलर की--